बहुत सारे घर भी बने हुए हैं साइड-साइड में बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं एक पानी की टंकी है बहुत सारे पहाड़ भी है पीछे तरफ।

एक आदमी बैठा हुआ है बनियान और टॉवल में उसके पीछे भी एक आदमीओर भी बैठा है और एक आदमी चलकर आ रहा है।

इसे की तरफ दो बड़ी-बड़ी बिसरपट्टियाॅं भी बनी हुई है।

उसकी दो मंजिली इमारत है इसमें तीन विंडो ऊपर है एक विंडो नीचे है और एक बहुत बड़ा-सा गेट है।

अंदर बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं एक कांटा रखा हुआ है जिस पे वजन तोलते हैं।

यहां एक लेक का फोटो है जिसमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक ब्रह्म खड़ा हुआ है खंभे पर वायरिंग गई हुई है उस तरफ एक बिल्डिंग खड़ी है और एक ब्लू कलर का रूप दिखाई दे रहा हैसाइड में टावर --

ऊपर की तरफ इसमें गटर और पटिए लगे हुए हैं।